और एक आदमीसामने की तरफ खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में एक मंडी भरा रही है।

और ब्लैक कलर का रेगजीन भी लगा हुआ है।

आदमी ऑरेंज कलर की एक कुर्सी पर बैठा है।

और एक बड़ी सी--

मंदिर में एक मूर्ति रखी है।

ये एक अ सैनिक साइकल मार्ट नाम से शॉप बनी है।